दुकान दिखाई दे रही है यह दुकान--

यह घर रंग बिरंगे लाइट से सजा हुआ

अ नीले नीले कलर के बड़े बड़े तीन बक्से दिखाई दे रहे है।